एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मे काफी सारे टेबल्स है। टेबल्स के ऊपर यहाँ पर चार प्लेट है। एक कटोरी है।

पिलर लगे हुए हैं। जिसमे लाइट लगी है। काफी सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए है। एक स्कूटी खड़ी हुई है जो सफेद कलर की है और चेक पोस्ट बने हुए हैं। तीन चार चेक पोस्ट एक के पीछे एक पीछे एक।

क्रेन से यहाँ से मिट्टी खींची जा रही है। पीछे बहुत से लोग हैं। काफी चारों तरह मैदान ही मैदान है। हरे हरे पेड़ पौधे है। पत्थर है। मिट्टी है। चारों तरफ एंड क्रेन जो है वो येलो कलर की है और दो लोगों ने इसमे सफेद कपड़े पहने हुए है।

एक आधा सिस्टम दिखाई दे रहा है माउस है पेन रखा है कागज रखा है एंड कैलंडर लगा हुआ है पंखा है शीशा है काफी से का --